एक ग्राउन्ड बना हुआ है ग्राउन्ड मे बहोत सारे लोग खड़े हुए है बहोत सारी लैडीज और जैंट्स भी है यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ है।

पहना हुआ है और उसने बैग टांगा हुआ है ऊपर आसमान है जो तीन कलर मे है पर्पल स्काइ ब्लू एण्ड ग्रे --

पूल बना हुआ है पूल मे फव्वारा लगा हुआ है और यहाँ पर बहोत सारे एक जैंट्स खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर का पेंट और व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहन हुआ है यहाँ पर दो लैडी है खड़ी हुई है नीचे बहोत सारी घासे लगी हुई है जो ग्रीन कलर --

-- और ऊपर आसमान है जो स्काइ ब्लू कलर का है यहा पर बहोत सारे ट्री लगे हुए है जिसमे बहोत सुंदर-सुंदर ग्रीन कलर की पत्तियाँ लगी हुई है और ये पूल का पानी बहुत--

यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है यहाँ पर दो कुर्सीया रखी हुई है जिसमे कुछ लोग बैठे हुए है।

पिंक ऑरेंज कलर के और ये --]

--और पूल के बा आजु बाजू में बहोत सारे फ्लावर्स लगे हुए है जो--

रेड कलर के है बहोत सारे पौधे लगे हुए है और जिसमे ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियाँ निकली लगी हुई है।

किला जैसा बना हुआ है सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमे विंडो लगी हुई है जो ब्लैक कलर की है दीवार मे एक बैनर लगा हुआ है।

छोटा सा पार्क बना हुआ है यहाँ पर दो कुर्सिया रखी हुई है जिस जो रेड कलर की है और यहाँ पर बहोत सारी घासे लगी हुई है जो ग्रीन कलर की है बहोत बड़े-बड़े यहाँ ट्री बनी हुए हैं।

यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है जहां पर झूले लगे हुए है यहाँ पर एक बच्चा झूले मे खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर का पेन्ट और ब्लू कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है ऊपर आसमान है जो स्काइ ब्लू कलर एण्ड ग्रे कलर मे है।

बहोत सारे पत्थर पड़े हुए है जो काफी बड़े-बड़े है बहोत से पत्--

यहाँ पर बहोत सारे ट्री लगे हुए है जिसमे ग्रीन कलर की पत्त--